बाल्टियों में पेंट रखा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ एक येलो कलर का आईडिया --

फ्रॉक पेहना रखी है फिराक का कलर येलो कलर --

होटल बनी है जहां सामने--

पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

रोड के सामने की साइड बहोत बड़ी बड़ी बिल्डिंग के बनी हुई--

दिखाई दे रही है यहां रोड के आसपास पेड़ पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे--

का बोट लगा हुआ दिखाई दे रहा है।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

का ब्रश टंगा हुआ दिखाई दे रहा है।

खड़े होकर कुछ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

दिखाई दे रहा है पास में एक दुकान पर एक अंकल खड़े हुए दिखाई--